ड्रम में कुछ सामान है और एक आदमी एक बाल्टी से एक मशीन पर कुछ डाल रहा है बगल में एक और आदमी खड़ा है।

जी यहाँ बहोत सारे लोग खड़ें हैं और एक हरा भरा पेड़ भी है यह चर्च लाइट से सजा हुआ है।